थी ये मुख्यमंत्री द्वारा बनाए गए है।

--जो की यंहा भी रुके के उत्तम व्यवस्था उत्तम सुविधा उपलब्ध है जंहा गाड़ी वाडी पार्किंग करे के जगह भी हे।

नास्ता और भोजन के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक के भी यंहा सुविधा उपलब्ध हे उत्तम व्यवस्था हे।

क्लास ल लगाए जाथे कक्षा लगाए जाथे इहा हमर ए पी जे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के फोटो भी हे।

त ए देखो संगवारी ओ हो हमन आ गे हन चप्पल जूता की दुकान मा।

ये देख सकत ह भाई हो संगवारी हो दीदी हो बहन हो की ए फोटो म एक तलाब हे।

तेन हा टूटे के कगार म आगे हे जर-जर हो गे हे एकदम--